उसने उजला का पैंट किया हुआ हे ।

उसमे चार चक्के हैं उजला रंग का ह ।

गाडी का रंग पीला हे और उस मैदान में बहुत सारे लड़की बैठे हे ।

एक तलाव हे उसमे बोहोत सारा पानी हे ।

हलवाई का दुकान है इसमे ढेर सारा मिठाई है फ्रिज है और खाने का बहुत सारा समान--